एक पार्क है यहां पर रोड बना हुआ है जो के डिजाइन वाला है और सूरज की किरण लाइटिंग मार रही है।

बहुत खूबसूरत सीनरी दिख रही है दो साइड मे बोहोत सारे घास लगे हुए है बीच में पानी नजर आ रहा है और सूरज--

बीच में से एक रोड बना हुआ है जिसपे सादे रंग के गर हैं और साइड में घर बना हुआ है जिसमें रंग सादा है और लाल रंग भी मिशा हुआ है और ऊपर में कुछ कपड़े से घिरे हुए दिख रहे हैं।